ये है सडक है सामने खूब सारी साइकिले पड़ी है सड़क के सामने साइकिल पड़ी है और पास में सड़क है वहा पर खूब सारी साईकिले पड़ी है।

ये एक जगह है यहा पर रोड सडक जा रही है सडक पर खूब सारी कार चल रही है।

और सामने एक बस भी है सामने एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है।

येह एक जगे है येह एक जगे है वहा सामने दो तिन दुकाने बनी हुई है बाहर रोड पर खूब सारी गाडिया चल रही है और कुछ लोग भी खड़े है।

ये है एक जगह है सामने दो आदमी खडे है वहा उसके सामने बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है दो आदमी चल रहे है रोड पर।

येह एक दूकान है यहा पर खाने का समान है यह एक बेकरी की दूकान है यहा पर एक टेबल रखा हुआ है टेबल पे खूब सारा समान पड़ा है।

येह बहोत बड़ा चर्च है चर्च में खूब सारे लोग खड़े हैं जोकि प्रेयर कर रहे हैं सामने सामने मूर्ति लगी हुई है यहां पे बहोत सारे लोग खड़े हैं।

येह एक जगे है सामने खूब सारा सामान पड़ा है उसके पास में एक आदमी खड़ा है सा ज्गह सामने खूब सारा समान है।

ये है जो की बहोत बड़ी दुकान है इस शॉप पर एक आदमी खड़ा है शॉप के अंदर खूब सारा सामान पड़ा है।

येह बोहोत बड़ा गार्डन बना हुआ है गार्डन के आस पास हरी भरी घासे है और छोटे छोटे गमले लगे हुए है सामने बहुत बड़ा पिलर खड़ा हुआ है।

उदर टेबल रखे हुए है और वहा पर खूब सारी कुड्सिया है सामने लाइटे बनी हुई है।

येह एक जगे है सामने एक दूकान बनी हुई है दूकान के बाहर चार बक्से पड़े है उसके पास में भी एक दूकान बनी हुई है।

येह बोहोत बड़ा गार्डन है सामने हरे हरे पेड़ बने हुए है गार्डन के अन वहा पर कुछ लोग है जो की चल रहे है बोहोत सारे लोग है।

ये यहां पर रोड जा रही है सामने हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं नीचे छोटे छोटे पेड़ है सामने एक घर भी बना हुआ है घर के अंदर एक आ--

येह बोहोत बड़ी जगे है सामने हरे भरे पेड़ लगे हुए है यहा पर खूब सारी कार खड़ी है और बोहोत सारी एक्टिवा भी खड़ी है एक्टिवा सामने बोहोत सारे लोग भी है।

येह बोहोत बड़ा गार्डन है गार्डन में खूब सारे पेड़ पोधे लगे हुए है और बोहोत सारे फुल भी है गमले भी रखे हुए है।

ये बोहोत बड़ा जंगल है यहा पे आस पास में बोहोत सारे पेड़ लगे हुए है छोटे छोटे घास है मिट्टी है खूब सारी ये बहोत बड़ा जंगल है।

बहोत सारी कुर्सियां है और टेबल भी लगे हुए है सामने दो आदमी--

एक आदमी बेठा है और एक आदमी खड़ा है छोटे छोटे फूल भी लगे हुए है।

बोत बड़ा रेस्टोरेंट है यहा पर सोफे लगे हुए है और चेयर भी लगी हुई है सामने कुछ लोग बेटे है और उपर छोटी छोटी जोपडिया बनी वि है बिच में टेबल भी है।

येहे बहोत बड़ा मैदान है यहा पर चार घोड़े है घोड़ो के उपर कुछ लोग बेठे हुए है।

यह बहुत बड़ा कमरा है यहां पर तीन कंप्यूटर पड़े हैं तीन बच्चे बैठे हैं और एक औरत है जो कंप्यूटर सिखा रही है बच्चों को बच्चे कंप्यूटर चला रहे है।

येह बोहोत बड़ा मैदान है बिच में एक सड़क जा रही है सामने बड़े बड़े पहाड़ है पास में छोटे छोटे पेड़ पोधे है घासे लगी हुई है।

ये बहोत बड़ा मैदान है यहा पर घास है सामने एक मोड़ है मोर है और हरे भरे पेड़ भी है मिट्टी भी है।

ये बोहोत बड़ी सड़क है सामने दूकान है उसके पास में भी एक दूकान है दूकान के बाहर खूब सारी गाड़िया खड़ी है एक कार भी खड़ी है।

एक कैफ़े बना हुआ है कैफ़े पे छोटे छोटे टेबल रखे हुए है और उसके पास में एक बड़ा टेबल है वहा पे खूब सारी चेयर पड़ी है सामने लोग बेठे है।

ये बहोत बड़ी जगे है यहा पर खूब सारे टेबल पड़े है टेबल पर लोग बेठे है सामने भी लोग खड़े है यहा खूब सारी टेबल्स है।

येह बोहोत बड़ी जगे है जगे के बिच में जोपडी बनी वि है पाल आस पास में खूब सारे पेड़ है पेड़ पोधे है और घास भी है।

येह बोहोत बड़ी जगे है जगे के आस पास हरे भरे पेड़ लगे वे है घास है हरी भरी बिच में सड़क जा रही है।